ये बहोत सुंदर कमरा दिखाई दे रहा है।

और अह एक आदमी भी खड़ा है।

लेडिस और जेंट्स सब करते है।

दुकानें या मॉल या घर दिखाई दिया है।

ये वो सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है और एक सुंदर लड़की भी खड़ी है।

और आई किस की मम्मी भी खड़ी है और यहां पानी भरते हैं नाली से।

जन्मदिन पे और किसी की शादी में कुछ सब कुछ मिलता हैं।

इसके अंदर बहुत सारे सामान हैं।

गलीचे बिछ रहे हैं और मेज भी बी बिछे है।

कितनी सुंदर वाटिका लग रही है और--

हरे रंग का कॉलिंग भी बिछ रहे--